यह एक संगीत स्टेज दिखाई दे रही है ढोलक दिखाई दे रही है।

एक दीवार अपर एक पंखा लगा हुआ है एक बल्ब लगा हुआ है।

आदमी के सर पर टोपी दिखाई दे रही है।

इसमें लकड़ी रखी हुई है एक बाहर डब्बा रखा हुआ है।

मेज रखी हुई है मेज के ऊपर कुछ कागज रखे हुए हैं पेन दिखाई दे रहा है।